यहाँ पर बहुत कुछ आदमी खड़े हुए हैं| एक आदमी जो वो मोटरसाइकल पर खड़ा हुआ है एक आदमी उसके अंदर जा रहा है।

इस पिक्चर मे हम देख पा रहे है की ये किसी घर की ली गई तस्वीर है जिसके अंदर प्लैन्टर डाला जा रहा है एक बोहोत बड़ी--